यह प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाता हुआ एक चित्र है यहां पे--

यह एक गैलरी हैं जिसमें कांच का प्रयोग बोहोत किया गया है कांच के प्रयोग से ही खिड़की दरवाजे बने हुएं हैं।